ये एक ट्री शॉप है इसमें बहोत सारे प्रकार के ट्रिज मिलते हैं बनाना का ट्री कोकोनट का ट्री मैंगो ट्री --

मानव को दे शिक्षा दी जा सकती है और हेलीकॉप्टर देश की प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है।

और चर्च नहीं तो हर किसी को जाना चाहिए क्योंकि हमारे भारत में--

ये एक डांस क्लासेस में बहोत सारे बच्चे डांस सीख रहे हैं उनके पैरेंट्स भी है सामने और बहोत सारे बच्चे अपने डांस सीख रहे--

पत्थर की स्क्रूती बनाई गई है भगवान द्वारा ये बहोत ही अच्छी--

कुंदरी टू अंधेरी वेस्ट वाला ये ये बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन बनाया मेट्रो स्टेशन बनाया गया है।